रही है बिल्डिंग के बाहर कई सारे लोग खड़े--

डी_एस कॉन्ट्रैक्शन इन आर्किकेट --

मुझे बहोत सारे लड़के दिख--

जो की बहोत जादा अच्छा लग रहा--

इस इमेज में मुझे एक बहोत सुंदर बिल्डिंग दिख--

इस इमेज में मुझे माताजी की--

कि बहोत ज़्यादा अच्छी लग--

रहा हैं यहाँ गेमिंग के--

एक और वहां बहोत बड़ा पहाड़ भी दिख रहा--

की स्टेचू दिख रही है उसी के--

मुझे एक दुकान दिखाई दे रही--

भी दिखाई दे रहे हैं।

रही हैं जो की बहोत ज़्यादा बड़ी लग रही --

यहां है ग्रांट में एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा--

मुझे एक बहुत बड़ा खेत दिखाई--